एक समान प्लास्टिक में भी है। समान एक ब्लू कलर के टेबल पर है।

यहाँ एक खाली स्थान है इस स्थान पर बहुत सारे समान रखे हुए हैं।

बगल मे एक कार भी है चारों तरफ दीवाल है।

कूल के बाहर बहुत सारे बाईक है।

न दी में एक पुल जैसा लोहे का बना हुआ है नदी के बगल में बहुत सारा पेड़ भी है।

एक आदमी बैठा हुआ है और एक खड़ा भी है। यहां पर लिखा हुआ है।

यहां एक बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल में बीम करने वाला बहुत सारा लोहे का समान है।

प्लेट टेबल पर है टेबल का कलर ब्राउन है।